यहाँ पर मुझे एक मकान दिखाई दे रहा और ये बहुत अच्छा ही सजा हुआ है यहाँ पर मुझे कुछ आदमी भी दिखाई दे रहै हैं और यहाँ पर मुझे कुछ गुब्बारे भी लगे हुए दिखाई दे रहै हैं और यहाँ पर मुझे कुछ--

यहाँ पर मुझे कुछ आदमी दिखाई दे रहा है जो की खड़े है और यहाँ पर इक गणपति जी की मूर्ति भी बहुत सुंदर रखी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी सजावट की है।